और साइकिल पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है वाइट कलर के शर्ट पेहेन कर |

सामने एक बहुत बड़ा हॉल दिखा रहा है ब्लू कलर के में और --

साउंड दिख रहा है डी.जे. सिस्टम और कुछ लड़कियां दिख रही हैं सामने की साइड और ऊपर की साइड पर्ल लाइट दिख रही है स्टैंड बना हुआ है सामने के साइड ।

और एक छोटी सी झोपडी टाइप बना हुआ दिख रहा है सामने और पानी भी दिख रहा है सामने की साइड --

और एंगल लगे हुए हैं लोहे के और एक ए.सी. भी दिख रहा है सामने के साइड ऊपर आसमान दिख रहा है।

और गेट दिख रहा सामने के साइड पेड़-पौधे दिख रहे हैं सामने और --

और टू व्हीलर गाड़ियां भी दिख रही है सामने बिल्डिंगे दिख रही है।

यहाँ पर एक झरना टाइप दिख रहे हैं जिसमें ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे पानी दिख रहा है पानी के बीच में एक पत्थर रखा हुआ है बड़ा सा।

बहुत पेड़ दिख रहे हैं सामने के साइड गेट दिख रहा है ब्लू कलर में --

और अअ कुछ पोस्टर लगा हुआ है सामने की साइड और नीचे दरी --

एक लेडीज़ जाती दिख रही है सामने और एक व्यक्ति बैठा हुआ कुछ लिख रहा है और कुछ मशीनें पड़ी हुई हैं यहाँ पर --